यहाँ पर एक हम नदी देख रहे हैं नदी में सफेद काले-ले चट्टाने दिखाई दे रही हैं जो पत्थर हैं छोटे बड़े।

यहाँ पर एक बड़ी सी कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है।

सामने पर्दा लगा हुआ है रेड कलर का और कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं।

नीले कलर की दिवार पर ब्लैक रेड कलर के बैलून लगे हुए हैं दो टेबल लगी हुई हैं चेयर रखी हुई है ब्लैक कलर की चेयर वाइट कलर की टेबल है और दिवार पर कुछ चित्र लगे हुए हैं सामने --

बैठे खड़े घूम रहे हैं और पहाड़ी पर हरी भरी पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पास में एक येलो कलर के बस टाइप की दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक रेस्टॉरेंट होटल का रूम दिख रहा है।

कवर टेबल पर बिछे हुए हैं एक बॉटल रखी हुई है एक टेबल पर और सामने कांच की खिड़कियां हैं फ्रिज दिख रहा है।